पिक्चर मे मंदिरे दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की है और नीचे कुछ लाल कलर का लिखा हुआ है।

इमेज मे एक गाय दिखाई दे रही है। इसको बाधा हुआ है। रस्सीसे बांध के रखे हुए है। बहुत सारे घास यह दिखाई दे रहा है। पिछे खिड़की दिखाई दे रही है।

चित्र मे एक प्लेट दिखाई दे रही है दो कॉफी के कप दिखाई दे रहे है कॉफी अंधर दिखाई दे रही है एक चमचा दिखाई दे रहा है।